और बहुत सारी बेन्चे रखी हुई दिखाई दे रही है और हमे लाईटिंगे भी बल्ब बहुत सारे ऊपर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे एक बहुत बड़ा ऑरेंज कलर का घर दिखाई दे रहा है। जिसमे हमे कपड़े छाए हुए दिख रहे है।

इस इमेज मे हमे व एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसमे एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है।

रानी पार वती देवी हायस्कूल अँड इंजीनि ज्यूनियर कॉलेज अह और ये येल्लो कलर का दिख रहा है।

इस इमेज मे हमे म-म गुफा सी दिख रही है और ये बहुत पुराने जमाने का है और सामने हमे एक अ-ह-म- गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे ये घर बहुत शुंदर दिखाई दे रहा है जो येल्लो कलर से पेंट किया गया है।

इस इमेज मे हमे एक प्रवेशद्वार दिखाई दे रहा है जिसमे ब्लू कलर के इससे कुछ लिखा हुआ है और अंदर हमे बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है और बहुत बड़े बड़े और ऊंची ऊंची पेड़े दिखाई दे रही है।

और पीछे हमे कुछ एक इमेज दिखाई दे रही है और अ-म- ये पिंक कलर का पेंट है दीवार मे और हमें पंखे भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है और अह कुछ बनासा दिखाई दे रहा है जिसपर घड़ी लगी हुई है एक कार दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।